व्हाइट कलर की और गेट के ऊपर नेम प्लेट है जो--

अह कुछ बॉक्स बना है जो ब्लू कलर का है और नीचे--